लेटेक और बीमर के प्रयोग से प्रस्तुतीकरण के इस ट्यूटोरियल में आप सबका स्वागत है
चलिए पहले स्क्रीन पर जो है उसे समझाते है
मेरे पास स्रोत फाइल यहाँ है मैं पीडीफ्लेटेक्स कमांड का इस्तेमाल करके यहाँ संकलन करुँगी और परिणामस्वरूप आउटपुट यहाँ इस कोने में दिखाई देगा
पहले इसे देखते है हम इसके लिए शीघ्र वापस आएंगे
पहले इसे करते है यहाँ पहली स्लाइड इस स्रोत से आती है - बिगिन फ्रेम एंड फ्रेम टाइटल पेज
टाइटल पेज को इन शब्दों में परिभाषित किया है टाइटल ऑथर याने लेखक और डेट याने तारीख
डाक्यूमेन्ट क्लास जो इस्तेमाल कर रहे है वोह है बीमर
हमने डाक्यूमेन्ट यहाँ शुरू किया है
ठीक है ये पहली स्लाइड है चलिए दूसरी स्लाइड पर जाते है
यह रूपरेखा है ये कैसे बनाते है160
बिगिन फ्रेम एंड फ्रेम एक स्लाइड को परिभाषित करता है
फ्रेम टाइटल रूपरेखा है
ये यहाँ आता है
फिर मैंने सामान्य आइटमाइज़ कमांड का इस्तेमाल किया है
तीसरी स्लाइड पर जाते है
यह स्लाइड लेटेक पर अन्य मौखिक ट्यूटोरियल के बारे में बताता है
लेटेक पर पहले से ही कई मौखिक ट्यूटोरियल उपलब्ध है
अगर आप लेटेक का उपयोग करने में सहज नहीं है तो आप इन्हें देख सकते है
यह समझाता है के लेटेक को कैसे इस्तेमाल करे कैसे संस्थापन करे और विन्डोज़ पर कैसे चलाए
और हम आशा करते है के फोसी डॉट इन फोसे डॉट इन के प्रयोग से एक स्थायी लिंक दे
तो हम इसके अंत में आ चुके है इस स्लाइड के लिए यह स्रोत है
आप देख सकते है के हम इस डाक्यूमेन्ट के अंत में आ चुके है
अब हम दिखायेंगे के कैसे इस डाक्यूमेन्ट को अलग फीचर्स से संजोए जो बीमर प्रदान करता है
चलिए शुरुवात में जाते है
इस फाइल के उपरी तरफ जाते है
अब मैं क्या करुँगी के जो भी बदलाव जो भी सुधार जो मैं यहाँ करने वाली हूँ वो यहाँ है
मैं एक समय पर एक जोडूंगी और समझाउंगी
चलिए देखते है जब बीमर थीम स्प्लिट इस कमांड को देते है तो क्या होता है
मैं इसे कट करती हूँ फिर से पीछे आते है इसे सेव करते है और फिर संकलन करते है - पीडीएफ लेटेक बीमर
मैं इसे क्लिक करती हूँ तो आप देख सकते है के इसने यह बैनर बनाया है और कुछ बैनर यहाँ
यहाँ भी ठीक है फिर हम क्या करते है के यहाँ आते है और पैकेज का प्रयोग करते है
इसे जोड़ते है - बीमर थीम शैडो
मैं इसे कट करती हूँ यहाँ जाते है पेस्ट करे ये सब डाक्यूमेन्ट कमांड के ऊपर पेस्ट किए है
संकलन करते है
ठीक है देखते है जब में इसे क्लिक करती हूँ तो क्या होता है
यह बड़ा हो गया है
आप यहाँ देख सकते है के कलर में बदलाव हुआ है
तो यह किया जाता है बीमर थीम शैडो कमांड द्वारा
यहाँ ऐसे कई पैकेजस है मैं अब कुछ और फीचर्स स्पष्ट करने जा रही हूँ
हम इस परिचय के भाग के रूप में आगे पढने के लिए कई संदर्भ देंगे जैसे के आप यहाँ देख सकते है रेफरेंस फोर फर्थर रीडिंग
इस वार्ता की रुपरेखा इस प्रकार है
हम थोडा समय टाइटल पेज लेखक का नाम कलर लोगो याने चिन्ह इत्यादि पर बिताएंगे
न्यूनतम एनीमेशन जिसका प्रयोग आप अपनी बात को प्रदर्शित करने के लिए कर सकते हो दो कॉलम प्रारूप आकृति और टेबल्स समीकरण वर्बेटिम याने शब्दशः इत्यादि
ठीक है वापस शुरुवात पर जाते है
अगला है लोगो
यहाँ से लोगो को कट और पेस्ट करते है
इसे भी कमांड बिगिन डाक्यूमेन्ट के ऊपर पेस्ट करना होगा
देखते है यह लोगो कैसे दिखता है
ओपन आईआईटीबी logoपीडीएफ
मैं यहाँ वही नाम दे रही हूँ
जब मैं इसे ओपन करुँगी तो आप देखेंगे के मैं इस इमेज फाइल की बात कर रही हूँ
1 सीएम ऊंचाई वाला यह लोगो कमांड इस कोने में आएगा
चलिए देखते है ये कैसा दिखता है इसे क्लिक करे
आप देख सकते है के आईआईटीबी लोगो आ गया है
अब से ये हर पेज पर आएगा
अब हम यह कमांड देंगे
प्रस्तुतियों के लिए कभी कभी यह उपयोगी है के सभी अक्षर बोल्ड हो
तो इसे ध्यान में रखते हुए मैं इसे शामिल करती हूँ कट पेस्ट
असल में तो मुझे इसे बिगिन डाक्यूमेन्ट कमांड के बाद शामिल करना होगा
मैं इसे सेव करती हूँ संकलन करती हूँ
ठीक है अब देखिए जैसे ही मैं इसे क्लिक करती हूँ सभी अक्षर बोल्ड होंगे
आप देख सकते है के ये बोल्ड बन चुके है
अब मैं यहाँ लेखन में सुधार करुँगी
उदाहरण के लिए ये यहाँ काफी सारी चीजों को डालने की कोशिश करता है
यहाँ शीर्षक आया है यहाँ लेखक की जानकारी आई है लेकिन बहुत सारी जानकारी आ रही है
कई बार मैं चाहूंगी के यहाँ छोटा शीर्षक हो
उदाहरणतः यह स्पेस इतना बड़ा नहीं होगा
तो हम क्या करते है के इसके इस्तेमाल से इसे सुलझाते है
उदाहरण के लिए यह रनिंग शीर्षक याने रनिंग टाइटल है
मैं इसे कट करती हूँ
यह कमांड टाइटल के बाद आना चाहिए टाइटल कमांड और वास्तविक टाइटल के बीच
तो मैं इसे यहाँ पेस्ट करती हूँ
आप देख सकते है के जो भी मैंने अभी पेस्ट किया है वोह वर्ग कोष्ठक में है
इसे सेव करते है रन करे
जैसे ही इसे मैं करती हूँ इस पर क्लिक करे देखिए के जैसे ही इस पर क्लिक करते है इस भाग पर क्या होता है
आप देख सकते है के टाइटल अब बदल गया है
मैंने सिर्फ तल का भाग दिया है जोकि इस वर्ग कोष्ठक में दिया है प्रेसेंटेशन युसिंग लेटेक एंड बीमर
फिर मैं कह रही हूँ के h स्पेस आधा सेंटीमीटर है जो यहाँ स्पेस दे रहा है और फिर यहाँ पेज नम्बर है
ये यहाँ कहता है 1 बाय 3 फिर 2 बाय 3
3 बाय 3 यहाँ इत्यादि
यह प्राप्त होता है इन्सर्ट फ्रेम नम्बर डिवाइडेड बाय इन्सर्ट टोटल फ्रेम नम्बर के प्रयोग से
मैं अब ऐसा ही लेखक याने ऑथर के लिए करुँगी
यहाँ आते है कट करते है
और ऑथर के बाद ये आता है
सेव करते है संकलन करे
इसे क्लिक करे
आप देख सकते है के कन्नन मौदगल्या आया है
यही मैंने वर्ग कोष्ठक में दिया है
अब ये हर एक पेज पर आएगा
चलिए अगले विषय पर जाते है
यह समीकरण सहित है
यह पूरी चीज़ एक फ्रेम की तरह है - एक पूर्ण फ्रेम
तो हम इस पुरे चीज़ को कट करते है यहाँ वापस आते है इस डाक्यूमेन्ट के अंत में जाइए
सेव करे
तो मैंने एक नई स्लाइड बनाई है
देखते है ये कैसी लग रही है
तो यहाँ से फ्रेम शुरू हो रही है
संकलन करते है
आप अब देख सकते है के यहाँ चार पेज है
लेकिन ये अभी भी तीन ही बता रहा है अगर हम एक और बार क्लिक करे तो अब ये चार बन गया है
तो इस स्लाइड में समीकरण है
मैं आपको नहीं समझाऊँगी के ये समीकरण कैसे लिखे
ये पहले मैंने जो ट्यूटोरियल बनाया था के कैसे समीकरण बनाए उसमें समझाया गया है
मैंने सिर्फ ये किया है के मैं उस लेटेक डाक्यूमेन्ट पर गयी हूँ कट किया और यहाँ पेस्ट किया है
और हाँ मैंने समीकरण संख्या हटा दी है
इसका कोई मतलब नहीं बनता के स्लाइड में समीकरण संख्या दी जाए
लेकिन कभी कभी कलर को चिन्हांकित करने के लिए या विशिष्ट रूप से बताने के लिए ये उपयोगी होता है
उदाहरण के लिए मुझे इसे बदल कर नीला करना है मैं इस प्रकार करुँगी
यहाँ आते है
कमांड है - कलर ब्लू और फिर इसे बंद करेंगे
सेव करे
संकलन करे और इसे क्लिक करे और देखिए के यह नीला बन चूका है
तो आप समीकरण को संख्या से संदर्भित नहीं करना चाहेंगे बल्कि आप कह सकते है के इस रंग वाले समीकरण को लीजिए या मास बैलेंस समीकरण को देखिए इत्यादि
आप उसे किसी चीज़ से संदर्भित करना चाहोगे जोकि लोग याद रखे
अब अगली चीज़ ये है के हम ऐनीमेशन को शामिल करेंगे
जोकि उपयोगी है जानकारी को एक के बाद एक अवधारणा द्वारा प्रस्तुत करना
तो मैंने इसे कट किया है और यहाँ पेस्ट किया है
चलिए देखते है ये कैसा नज़र आता है
पहले संकलन करते है और देखते है क्या होता है
ये पत्र लेखन वाले ट्यूटोरियल से है
ये जानकारी भी है यहाँ
इसमें सिर्फ यह बदलाव है के बिगिन एन्यूमरेट और एंड एन्यूमरेट के बीच मैंने आइटम प्लस मायनस अलर्ट डाला है
देखते है ये क्या करता है
देखिए मैंने यहाँ एक कमांड दिया है पॉज़ जैसे ही मैंने कमांड पॉज़ दिया वोह वही रुक गया और अब बिगिन एन्यूमरेट शुरू होता है
थोडा आगे जाते है पेज डाउन अगला पेज अगला पेज अगला पेज
जैसे ही नीचे जाते है नई जानकारी लाल रंग में है और बाकि सब डिफॉल्ट रंग में जो है काले रंग में
मैं इस डाक्यूमेन्ट के अंत में आ चुकी हूँ
तो ये एक सरल तरीका है ऐनीमेशन बनाने का जहाँ एक समय में थोड़ी जानकारी प्रस्तुत करनी है
अगली चीज़ जो मैं करना चाहूंगी वोह यह है के विशिष्ट रंग को नीले रंग में परिवर्तित करू
उदाहरण के लिए यहाँ विशिष्ट रंग है लाल इसे अलर्टेड कलर कहते है
मैं इस अलर्टेड कलर को नीला बनाना चाहूंगी
ताकि ये इस कलर के अनुरूप है जो मैंने चुना है
ठीक है मैं यहाँ आती हूँ इसे कट करती हूँ
ये इस डाक्यूमेन्ट के शुरुवात में जाना चाहिए बिगिन डाक्यूमेन्ट कमांड के पहले
संकलन करती हूँ जब मैं इसे क्लिक करती हूँ आप देख सकते है के अलर्टेड कलर नीला बन चूका है
इसे प्राप्त किया जाता है कमांड सेट बीमर कलर - अलर्टेड टेक्स्ट सेट बीमर कलर - एलर्टेड टेक्स्ट
यहाँ एक स्पेस है फोरग्राउन्ड ईक्वल्स ब्लू एफ जी ईक्वल्स ब्लू
अब मैं बताऊँगी की कितना सरल है पुरे डाक्यूमेन्ट का रंग बदलना
तो मैं क्या करती हूँ के यहाँ आती हूँ इस स्लैश डाक्यूमेन्ट के बाद बीमर वाक्यांश शुरू होने से पहले लिखूंगी ब्राउन
सेव करे संकलन करे
आप देख सकते है के ये ब्राउन बन चूका है
तो अब हम इसे अपने मूल रंग में वापस लाते है
डिफॉल्ट याने वितथ रंग ब्लू है तो मुझे टाइप करने की ज़रूरत नहीं
तो हमें फिर से ब्लू रंग मिला है
अब यहाँ आते है
मैं इसे डिलीट करती हूँ
अब मैं आकृतियों को याने फिगर्स शामिल करती हूँ
इसे कट करते है यहाँ आते है इसके अंत में जाते है
आखरी वाला
संकलन करते है
अब अगले पेज पर जाते है
तो फिगर का उदाहरण यहाँ दिया है
ठीक है अब इसे रखने के लिए क्या दिशा निर्देश है
यहाँ कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश है
हम उसे थोड़ी देर में देखेंगे
इसे कट करते है पेस्ट करे संकलन करे
चलिए स्रोत पर आते है जहाँ हमने फिगर या आकृति बनाया था
इस तरह से हमने ये फिगर बनाया था
तो क्या दिशा निर्देश है
प्रस्तुतिकरण के समय फ्लोटेड परिवेश का उपयोग ना करे उदाहरण के लिए बिगिन फिगर एंड फिगर ना कहे जिसकी ज़रूरत लेटेक डाक्यूमेन्ट में होती है
अगर आपको जानना है के फिगर को कैसे शामिल करे या उसके बारे में और कुछ तो टेबल्स और आकृति वाले ट्यूटोरियल को देखे
तो इसका उपयोग ना करे
सीधे इन्क्लूड ग्राफिक्स का उपयोग करे
उदाहरण के लिए इन्क्लूड ग्राफिक्स का इस्तेमाल हुआ है और मैं कह रही हूँ के टेक्स्ट की पूरी चौड़ाई का उपयोग करो और फाइल है आईआईटीबी आई आई टी बी
वैसे बीमर में पहले से है ज़रूरी पैकेजस होते है तो आपको कोई पैकज को शामिल अथवा इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं वे पहले से ही शामिल है
और फिर हम पूरी चीज़ मध्य परिवेश में रखते है
यह फ्रेम पूरी हो चुकी है
कैप्शन या फिगर नम्बर को शामिल ना करे
लोग इन नम्बर्स को याद नहीं रखने वाले
अगर आपको पहले दिखाए आकृति का उल्लेख चाहते है तो फिर से उसे दिखाए
एक और स्लाइड बनाने के लिए पैसे खर्च नहीं होंगे
पहली दिखाई गयी स्लाइड की कॉपी बनाए और उसे फिर से करे
ठीक है अब फिगर और दिशा निर्देश पुरे होते है
और हम इस डाक्यूमेन्ट के अंत में आ चुके है
चलिए देखते है एक दो कॉलम वाले परिवेश को कैसे शामिल करे
यहाँ आते है
डाक्यूमेन्ट के अंत में जाते है
सेव करे
मैं इसे और सरल बनाने के लिए यह करुँगी के इसे हटा दूंगी ताकि ये सरल बने
तो अब मैं क्या करुँगी के जानकारी का कुछ भाग बताउंगी
संकलन करते है और देखते है क्या होता है
तो अब मेरे पास ये है दो कॉलम्स

ओह ये सेव नहीं किए है इसलिए देखिए स्टार स्टार
पहले तो हम ये करते है के इसे सेव करते है
ये कठिनाई होती है जब आप सेव किए बिना संकलन करते हो पीडीएफ पीडीएफ फाइल जो आप देख रहे है वह उसके अनुरूप नहीं है जो आपके पास यहाँ है
तो इसका संकलन करते है
यहाँ आते है
अब यहाँ जो आप देख रहे है वोह यहाँ जो आपके पास है उसके अनुरूप है
चलिए इसे मध्य में लाते है
तो फ्रेम टाइटल है टू कॉलम्स और मैं प्रयोग कर रही हूँ कमांड मिनी pageमिनी पेज का और इसे मध्य में करती हूँ तथा मैं पैंतालीस प्रतिशत टेक्स्ट विड्थ याने के चौड़ाई का उपयोग कर रही हूँ
बिगिन एन्यूमरेट ये दो और फिर एंड एन्यूमरेट
पहले की तरह इसे विशिष्ट रूप से बता रही हूँ
इन दोनों को देखिए
यह डाक्यूमेन्ट का अंत है
अब में क्या करती हूँ के यहाँ आती हूँ और जो भी इसके आखिर में है उसे जोड़ते है
यहाँ पहले वाला मिनी पेज समाप्त हुआ है
अब मैं और एक मिनी पेज बनाउंगी और इस मिनी पेज में मैं आईआईटीबी डालती हूँ वही इमेज जो हमने पहले देखी थी
और इस मिनी पेज का साइज़ भी पैंतालीस प्रतिशत है
संकलन करते है
इसे पहले सेव करते है
इसे क्लिक करते है
अब देख सकते है के ये आ गया है
लेकिन इसमें एक समस्या है के जब मैं इस पेज पर जाती हूँ यह पहला आइटम तथा साथ ही यह आकृति भी बताता है
हालांकि यह आकृति बाद में आती है यह इसलिए बताता है क्योंकि हमने लेटेक से कही नहीं कहा के इसे बाद में दिखाओ
यह शायद निहित है
उदाहरण के लिए अगर आप इस जानकारी को इस आइटम के अंतर्गत डालोगे फिर हम कहेंगे के पहले इस बताए और फिर इसे लेकिन कहीं भी हम ये नहीं कह रहे के ये बाद में आना चाहिए
तो हमें ऐसे चीजों का ध्यान रखना चाहिए
इस समस्या का एक हल है के pauseपॉज़ डाले
संकलन करते है
सेव करे
तो अब ये ठीक है
अब ये समस्या हल हो चुकी है
पहला वाला दूसरा वाला और फिर एक और यह एक बार गुज़रता है और आप देख अकते है के ये हल हो चूका है
ठीक है यहाँ आते है
अगला है टेबल
इसे सेव करे
संकलन करे
आप देख सकते है के टेबल आ गया है
मैं आपको नहीं बताउंगी के ये टेबल कैसे बनाना है ये पहले ही टेबल्स वाले ट्यूटोरियल में समझाया गया था
मैंने बस इसे यहाँ कट और पेस्ट किया है
फ्रेम की शुरुवात में जाते है
ये वही टेबल है जिसका प्रयोग हमने पहले किया था मैंने सिर्फ कट और पेस्ट किया है
002314 002226 आप मध्य परिवेश में बिगिन टैब्यूलर और एंड टैब्यूलर कमांड्स को आते हुए देख सकते है
दिशा निर्देश क्या है160
यह फिगर्स के दिशा निर्देश के जैसे ही है
तो चलिए वोह भी देखते है
देखिए यहाँ दिशा निर्देश है
संकलन करते है
यह देखिए
मूव फॉरवर्ड
एक बार फिर फ्लोटेड परिवेश का इस्तेमाल प्रस्तुतीकरण में ना करे
टेबल्स के मौखिक ट्यूटोरियल में हम टैब्यूलर को टेबल परिवेश में डालते है
टेबल परिवेश फ्लोटेड परिवेश है इसे यहाँ शामिल ना करे
इसे डिरेक्ट्ली याने सीधे शामिल करे
उदाहरण के लिए हम मध्य परिवेश में सीधे उसे शामिल करते है
कैप्शन टेबल नम्बर इत्यादि को शामिल ना करे
ज़रूरत हो तो उसकी एक कॉपी बनाए
ठीक है अब मैं यहाँ बताना चाहूंगी के किस तरह ऐनीमेशन होता है
उदाहरण के लिए इस स्लाइड में ये किसी और रंग से अलर्ट नहीं हुआ है
याद कीजिये के हमने ब्लू कलर का प्रयोग किया था अलर्ट करने के लिए
ऐसा क्यों हुआ160
वोह इसलिए क्योंकि हमने यहाँ एक अलग तरह के परिवेश का इस्तेमाल किया है
बिगिन आइटमाइज़ एंड आइटमाइज़ उसी के अंतर्गत हमने इस्तेमाल किया आइटम प्लस माइनस
पहले हम अलर्ट शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे
उसे याद कीजिये
अब हम उसका प्रयोग नहीं कर रहे
जिसके परिणामस्वरूप ये काले रंग में ही आता है
यह सरल तरीका है ऐनीमेशन को शामिल करने का
तो आप चुन सकते और ले सकते है
तो ये है जो हमने लिखा था
शो डिफरेंट एनिमेशंस इन थे प्रीवियस स्लाइड याने पिछले स्लाइड में अलग अलग ऐनीमेशन दिखाए
अब इसे एक हैन्डाउट में बदलने की ज़रूरत है
उदाहरण के लिए अगर आप इसे प्रिंट करने की कोशिश करे जो भी यहाँ है ये 24 पेज बनाएगा जबकि यहाँ सिर्फ दस पेज है
यहाँ सिर्फ दस विशिष्ट फ्रेम्स है लेकिन यहाँ 24 पेज है
लेकिन आप प्रिंट करने की कोशिश करे तो ये 24 पेज देगा
एक तरीका है इसका ध्यान रखने का के एक आसान स्विच का प्रयोग करे जिसे हैण्डआउट कहते है
अगर मैं इसे करती हूँ पहले संकलन करती हूँ अब यहाँ सिर्फ दस पेज है
चलिए एक और बार संकलन करते है अब यहाँ ऐनीमेशन नहीं है
अगर मैं अगले पेज पर जाती हूँ नेक्स्ट पेज नेक्स्ट पेज नेक्स्ट पेज नेक्स्ट पेज
अगर हमें कलर बदलना है तो मैं फिर से ब्राउन याने भूरा रंग देती हूँ
आप देख सकते है के ये बदल चूका है
तो यहाँ सारे मापदंड जो अल्पविराम द्वारा अलग किए होते है शामिल होने चाहिए
तो अब मैं इसे फिर से नीला रखती हूँ
संकलन करे
अब हम क्या करेंगे के कभी कभी हमें वरबाटीम परिवेश को शामिल करना होता है
चलिए मैं यह उदाहरण लेती हूँ
यहाँ जाते है अंत में जाइए
सेव करे
तो यहीं वरबाटीम शुरू होता है
तो आप देख सकते है के वरबाटीम बना है
यहाँ मैंने कुछ साइलैब कमांड्स के साथ इसकी व्याख्या की है
मैंने यहाँ कलर ब्लू दिया है इत्यादि
एक चीज़ जो आपको करनी थी वोह है के ये कहना है बिगिन फ्रेम फ्रैजाइल वर्ग कोष्ठक में
अगर आप ऐसा नहीं करते तो एक समस्या हो सकती है
ठीक है तो आप ये देखिए हम फिर से आएंगे और उसे जांचेंगे
तो अगर मैं ये डिलीट करती हूँ सेव करे संकलन करे
ये आकर कहेगा के कुछ तो ठीक नहीं है
तो इसे फिर से लिखते है फ्रैजाइल
सेव करे यहाँ से बाहर आते है
फिर से संकलन करते है
अब ये आ गया है
बीमर क्लास में बहुत सारी जानकारी है
हमें दूसरी चीजों के बारे में कैसे पता चलेगा
तो मेरे पास कुछ जानकारी है यहाँ नीचे जाते है
तो वोह अधिक जानकारी इस स्लाइड में है
संकलन करते है और उसे देखते है
बीमर के लिए आधिकारक स्रोत है ये फाइल बीमर यूज़र गाइड डॉट पी डी एफ
मैंने इसे यहाँ से पता किया है लेकिन बीमर क्लास के लेखक द्वारा दिए गए बीमर परियोजना वेबसाइट पर भी ये उपलब्ध है
मैं इसे स्पष्ट करती हूँ मैंने पहले ही इसे डाउनलोड किया है ये उस साईट में है जिसका ज़िक्र मैंने पहले किया था
उदाहरण के लिए ये 224 पेज का एक डाक्यूमेन्ट है
यह एक बड़ा डाक्यूमेन्ट है
हम ये बताना चाहते है के यहाँ से सीधे आप जानकारी का इस्तेमाल कर सकते है
तो यहाँ आते है
पहले ही पेज पर लेखक ने बताया है के सरल स्लाइड्स को कैसे बनाए और साथ ही स्रोत भी दिया है
हम इसे कट करते है कॉपी करते है इसे मिनीमाइज़ करते है
मैं डाक्यूमेन्ट के अंत में जाती हूँ
पेस्ट करते है
सेव करे
संकलन करे
अगले पेज पर चलते है
आप देख सकते है के जो भी हमने वहाँ देखा था वो यहाँ आया है
यहाँ लेखक ने थीअरम परिवेश का प्रयोग किया है
ठीक है उदाहरण के लिए बिगिन थीअरम एंड थीअरम
लेखक ने फ्रेम सबटाइटल का भी प्रयोग किया है जो छोटे अक्षर में है
और फिर बिगिन प्रूफ और एंड प्रूफ यहाँ है
जैसे वो प्रूफ कहते है
यह एक विंडो ओपन करता है जिसे प्रूफ डॉट कहते है
इसी तरह से परिवेश को परिभाषित किया है
लेखक एक अलग अलर्ट मेकनिज़म का प्रयोग कर रहा है
उसे देखने के लिए पीछे आते है
इस हैण्डआउट को हटाते है ताकि हम ऐनीमेशन देख सके
संकलन करे
ठीक है
चलिए पेज चौंतीस पर जाते है
ठीक है अब ऐनीमेशन देखते है
आप देख सकते है
ठीक है यहाँ आते है
तो ये दो आइटम को संख्या दि गयी है 1 और दूसरों को संख्या 2 और 3
दूसरे शब्दों में यह भी संभव है के चीजों के अनुक्रम को स्पष्ट कर सकते है जो की स्लाइड पर दिखाई देगा
हमारे पास समय नहीं है इसे विस्तार में देखने के लिए
मैं ये सुझाव दूंगी के इसके बारे में ज्यादा जानने के लिए यहाँ दिए गए सन्दर्भ को देखे
इस संदर्शिका में कई वैशिष्ट्य है
इस बीमर क्लास में बहुत सारे वर्ग है
हो सकता है आप उनमें से कुछ की कोशिश करना चाहोगे
मैं इसे फिर से हैण्डआउट में बदल देती हूँ
अब हम हैण्डआउट मोड में वापस जा रहे है प्रेसेंटेशन मोड में एक समस्या है के यहाँ जो ऐनीमेशन आप दिखाते है उसका संकलन होने में काफी वक्त लगता है
तो विशिष्ट रूप से आप ज्यादा से ज्यादा हैण्डआउट मोड के साथ काम करना चाहेंगे और कभी कबार जब आपको सही में जाँच करनी है तो प्रेसेंटेशन मोड का प्रयोग करोगे
अंततः आपको आगरा प्रतुतिकरण याने प्रेसेंटेशन बनानी है तो आप प्रेसेंटेशन मोड का प्रयोग करना चाहोगे
और आपको अगर प्रिंट लेना है तो हैण्डआउट मोड का प्रयोग करे
चलिए आखिर में जाते है
हम लगभग ट्यूटोरियल के अंत में आ चुके है
चलिए आभार मानते है
पहले इस पूरी चीज़ को कॉपी करते है और यहाँ आते है
संकलन करते है

इन ट्यूटोरियल के लिए निधिकरण आता है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा इक्ट के माध्यम से
इस मिशन के लिए ये वेबसाइट है
इस ट्यूटोरियल में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद
आप अपनी प्रतिक्रिया kannaniitbacin पर भेज सकते है
मैं सकीना शेख आपसे आज्ञा लेती हूँ